और यह बेकरी की दुकान नजर आ रही है यहां पर बेकरी की दुकान के साथ साथ अंदर--

यह तस्वीर मध्यरात्रि की नजर आती हैं आसमान में धुआं धुआं ही नजर आ रहा है।

यहां पर तारे-तारे बिजली के खंभे--

इस पिक्चर के अंदर कई सारे व्यक्ति मजदूर--

जैसा कि वुडलैंड शॉप रिबोक लखनवी--

यहां पर एक व्यक्ति गाड़ी की ओर देखता जा रहा है साथ ही में--

घर मकान बने हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर टेबल चेयर्स रखी हुई है टेबल पर दो ग्लास सजे हुए हैं और साथ ही में डोसे चटने की--